बैठे हुए है बहुत सुंदर दिखाई दे रे है।

यह बहोत सुंदर मंदिर दिखाइ दे रहा है बहोत अच्छी सजावट--

और गमले भी रखे हुए हैं।

तेरह है बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे--

यह बहोत बड़ी दुकाने दिखाई दे रही है।

यहां बहोत सारे आदमी घूम रहे हैं।

एक बहोत बड़ा दरवाजा भी बना हुआ है।

यह गुब्बारों से फूलों से सजा रखी है।

यहां बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

येह बहोत बडी धरमशाला सी नजर आ रही है।